यहां तीन मूर्ती रखा हुआ है भगवान बुद्ध का मूर्ती--

बट कुछ शो कर रहा है बगल में एक आदमी बैठा हुआ है ग्रिल है।

बिल्डिंग हैं दो खंभा है वहाँ पे और यहाँ बहोत अच्छे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं।